यहां में कुछ लोग--

मतलब यह ए_सी कोच वाला बस है।

यह एक पुस्तकालय है।

यह बड़ा एयरपोर्ट हो सकता है।